काला शर्ट पहेनले है। ढेर अच्छा फील्ड है। ई सब क्रिकेट गेंदा खेल रहले है।

एगो घर है अथि पिंका अथि सन उजला कलर का दिखरहले है। एगो पेड़ है बगलवा मे।

एगो मॉल है और मिठाई रखल है सिसवा के अन्दर। एगो लड़की खड़ी है। डिजाइन डिज़ाइन के मिठाई हई अच्छा अच्छा है। फिर एगो लड़की साडिया --

इमे घर दिखले फिर इधर पानी ओनी है ऊपर दिख --

ऑटो है फिर एगो आदमी टैंपू है। एगो आदमी खड़ा है लाल के ऑटो है।

बहुत सारा जंगल देखले बहुत अच्छा लागले कार लगल है